आगे बढ़त जा सकता है यह बहुत शानदार कॉलेज है और नामी कॉलेज है। यह कॉलेज हमारे लिये बहुत अच्छा है।

उससे छेड़खानी करने पर यह बाघ इन लोगों की जान भी ले सकता है और बहुत खतरनाक --

और यहाँ की पीक निकाल रहा है यह बहुत अच्छी अ जगह है य यह एक चट्टान पर खड़ा है बहुत ऊंचे जगह पर ओर सभी को नोट --